इसने चसमा लगा रखा है और व्हाइट पेंट शर्ट पहन रखी हैं।

यहा पर हमे कुछ लड़किया दिखाई दे रही है और दूर एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है खंबा दिखाई दे रहा है बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पैंट किया गया है यहा पे पानी ले रखे है पौधे वगेरा लगा रहे है।

घर दिखाई दे रहा है और घ घर जो है उसे हरे और सतरे रंग से पेंट किया।

और सामने बहुत सारे घास बड़े-बड़े पौधे पेड़ पौधे भी लगे हुये हैं हरे भरे पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

बहुत सारी मिठाईयां दिखाई दे रही हैं जिसमे बर्फी लड्डू कुछ कुछ रखे हुए हैं नमकीन भी रखा हुआ है पेपर बिछा हुआ है कांच लगा हुआ है लकड़ी से बना हुआ है।